यह चित्र मे हमें एक राखी की दुकान दिख रही है जिस पे बहोत सारी राखिया टंगी है राखी अलग-अलग रंग की है लाल गुलाबी ओ महरून रंग की--

यह चित्र एक भदभदे का है जहाँ चार शटर खोले हुए है शटर में से पानी निकाला जा रहा है भदभदे के आस-पास हरे रंग के पेड़ लगे है।

ये चित्र एक दुकान है जहाँ बहोत सारी किताबें रखी हुई है और बहोत सरे पेन रवर शॉपनर स्केल के डब्बे रखे गए है।

वो छत की प्लास्टर कर रहा है पीछे बहोत सारे रेत का ढेर है।

खेत के पीछे एक बहोत बड़ा पहाड़ बना हुआ है और कुछ मोबाइल के एंटीने लगे है।

जहाज का नाम नफीशा जहाँ करके हे ऊपर लोहे के लोहे के मशीनें बनाई गई है।

यहाँ एक कत्थई कलर की कार रखी है जिसका जिसको सुधारा गया है कार के टायर बाहर निकाल दिए गए है।

ये एक हलवाई की दुकान है जहाँ कुछ मिठाई और कुछ नमकीन रखा हुआ हे।

ये चित्र एक पेट्रोल पम्प का है जोकी नीला और लाल रंग से पुता है पेट्रोल पम्प के बाहर कुछ गाडियाँ पेट्रोल भरवा रही है।

यह चित्र एक टमाटर की टोकरी का है टोकरी मे कुछ लाल कुछ --